यहां पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं।

पीछे एक तालाब है जिसके चारों तरफ ग्रीन कलर की ग्रील लगी हुई है।

ऊपर ब्लैक कलर के पंखे लगे हुए है।

यहां सामने एक लड़का बैठा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं।

सामने बड़ी बड़ी तीन ढोलक रखी हुई हैं जिनका कलर रेड है।

मोटरसाइकल के पास एक बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर कुछ मकान है और साइड में कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे खड़े हुए हैं।

साइड में एक पेड़ पर वाइट कलर की लाइटे लगी हुई हैं।

सामने एक बड़ा सा पहाड़ है जिसमें से पानी का झरना बह रहा है।

इसके अंदर बहुत सारी अलमारी वह कुछ शीशे रखे हुए हैं।

और भी बहोत सारा सामान रखा हुआ है।